इस तस्वीर में मुझे एक एस_बी_आई बैंक दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

यहां में मुझे कलर भी बहोत सारा दिखाई दे रही है।

समान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रहा है।

नदी की कलर जो मुझे ब्लैक रंग में देखाई मिल रही है।

इस एरोप्लेन में इंडिगो लिखा हुआ दिखाई पा रही है।

मुझे इस पिक्चर में मुझे बहोत सारा आदमी दिखाई दे रही है।

असमान भी मुझे सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के आसपास में मुझे बहोत सारा ग्रास भी उग के दिखाई मिल रही है।

इस नोटिस बोर्ड में मुझे जे_आर इंटरप्रेस लिखा हुआ अभी दिखाई पा रही है।

कि यहां में मुझे एक बड़ा सा ब्रिज भी दिखाई दे रही है।

इस रूम की अंदर में बहोत सारा लाइट भी जला हुआ मिल रही है।

यहां में गाड़ी बाइक भी पार्किंग करके दिखाई पा रही है।

यहां में मुझे एक स्टैंड फैन ब्लू और व्हाइट रंग का भी दिखाई पा रही है।

और आसमान भी मुझे ब्लू रंग में और सफेद रंग में दिखाई दे रही है।

इस ग्रेप को एक बकेट में रखा हुआ गया है।

ड्रेस के इस साइड में न्यूजपेपर लोग भी दिखाई मिल रही है।

ये यहां में मुझे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई पा रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक रूम दिखाई दे रही है।

यहां में मुझे येलो कलर का फूल भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई मिल रही है।

इस शॉप की अंदर में मुझे बहुत सारा दवाइयां दिखाई मिल रही है।

और यहाँ में मुझे बहुत लंबा लंबा तामूल पेड़ भी बहुत सारा दिखाई मिल रही है।

मुझे यहां मे सफेद रंग का फैन भी दिखाई मिल रही है।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

इस पिक्चर में मुझे एक सुंदर सा जगह दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा नदी दिखाई दे रही है।

और यहां में मुझे बहोत सारा आदमी भी दिखाई दे रहा है।

जहां में मुझे बहोत सारा आदमी लोग फूल खरीदते हुए दिखाई पा रही है।

यहां में एक गाड़ी में कुछ समान लोड कर रही है।

जहां में मुझे औरत ना नाचते हुए दिखाई मिल रही है।

ये यहां में मुझे एक बकेट भी दिखाई मिल रही है।

एक चिली को जो ब्लर किया गया है।

और यहां में मुझे एक बहोत सारा बड़ा बड़ा मार्केट भी दिखाई दे रही है।